बड़े बड़े अच्छे लग रहे है| नीचे कालीन ब्लू बिछी हुयी है| व्हाइट सफेद पर्दा पड़ा हुआ है| रंग विरंगे ड्रेस में बच्चे डांस --